ऊपर आसमान दिखाई दे रही है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे वायर भी दिखाई दे रहे हैं।